उल्टी पड़ी है और जो तैरा की होती है ।

जो कि एक हरे-हरे मैदान में खड़ी है और काली बुलेट बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है ।

और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है ये रात में कर रहें --

लगा देता था उनके दिमाग के पीछे क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा रोशनी --

ये पहाड़ पे की है और पहाड़ों पे जो है बारिश --

बहुत ज्यादा अच्छी है और ये है एक समुंद्र के किनारे जो है ये झूले लगे हैं जिसमें जो --

और जो है किताबों की दुकान हमारे जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लाती है ।

की एक डांस क्लास है जिसमें कि बच्चे घूम रहे हैं ।

और जो महिलाएं हैं जो इन मंदिरों में जो है पूजा --

तस्वीर जो देख रहे हैं ये एक मंदिर की है और ये मंदिर जो है ये गौतम बुद्ध --

जो है पानी की बोतल और सर में लगाने की डाई --

यहाँ पे हम दाढ़ी बनवा सकते हैं अपने बाल बनवा सकते हैं स्पा करवा सकते हैं और --